और ये शायद मॉल ऑल का एरिया हो सकता है यहाँ पर अपना--

उम्म अरे मेन रोड ह मेन रोड हो सकता है अइसे ठीक है ये और कुछ नहीं--

ये जो है सन सेट का पिक है पानी जो है अच्छा बस लेहेर रहा है और ये जो है ओवर ब्रिज का एरिया लग रहा हैं।

है यहाँ जो है एरिया आपना तेलंगाना का लग रहा है बट --

पर वो जो है मेरेको मूर्ति टाइप से लग रहा है मतलब स्टैच्चू टाइप से --

है ये स्कूल असकूल का कुछ नेम वमे है बाकि जो है अच्छा है और स्कूल स्कूल का एरिया लग रहा है तो इतना ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है।

हा ये जो थीम है वो वॉटर पार्क का लग रहा है फन लीला वॉटर पार्क ये मेरे को पता नहीं कहाँ पर है।

बाकी सारा ठेला-वेला कुछ लगा हुआ है खाने पीने का यहाँ पर थोड़ा लग रहा है ठेला-वेला कर के --

ये लाइन दिख के लगता है लेडीज लोग का लाइन मतलब रासन -वासन के लिए लाइन -वाइन लगे है पर वहाँ पर थोड़ा -सा लग रहा है कि --

गाड़ी -वाड़ी आना जाना चल रहा है इसका फोटो खिंच दिए है यार क्या बोलेगा अब इसको भी --

और दिखत कुछ नहीं है फोटो व्होटो में बाकि फोटो अच्छा है हम्म हव फोटो अच्छा है वैसे--

ये जो है पानी में बैठा हुआ है और फोटो वोटो खिचा रहा है खिच रहे यह खिचा रहा है पता नहीं इसका समझ नहीं आ रहा है।

ये लड़का के फोटो जो सेल्फ लिए हुआ है वो अच्छा नहीं है जोकि--

और ये जो है लड़का जो पत्थर में बैठ के फोटो खिंचाया हैं।

उस हिसाब से बता रहा हूँ की ये जो है फोटो --

है ये जो है ऑटो वोटो वाला हैं ये मतलब नया खड़ा हुआ है।

और क्या चलो ठीक है फोटो अच्छा आया है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है फोटो में चलो ठीक है ठीक--

ये जो है वो ठीक है बाकि जो पत्थर-उथर वाला इलाका हैं।

है न और ठीक है वैसे कुछ दिक्कत नहीं है फोटो - वोटो में --